लेकिन उसके बाहर का जो बैकग्राउण्ड है वो बिल्कुल भी अच्छा नही लग रहा है पूरा गंदगी से भरा पड़ा हुआ है।

हैलो गाइज ये एक आ समुद्र का स्थान है जहां पर समुद्र के बीच में बड़े-बड़े पत्थर बिछाये गए हैचारो तरफ जंगल झाड़ी है पहाड़ी इलाका है।

हेल्लो गाइस आप लोग देख रहे हैं ये बड़ा सा झील है जो पत्थरो से होते हुए है नदी में जा रहा है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसका दृश्य अत्यंत ही ऐसा लग रहा है मनो की --